सामने एक फव्वारा दिख रहा है जिसमें लंबी सामने गोल ओर--

फव्वारे लगे हुए हैं दोनों साइड सड़क है और बहोत सारे--

दिखाई दे रहे हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट है सामने एक बड़ा--

डला है। जिस पर काली और कत्थाई सफेद लाइनें है। सफेद तकिया है। जिसके पीछे --

चॉकलेट की कलर का गेट दिख रहा हैं और सामने दीवाल --

बने हुए हैं जिनमें बहुत सारी शीशी और खोखे रखी हुई है। सामने दीवार सफेद कलर की है जिस पर ऊपर दो ट्यूबलाइट दिख रही।

बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ है तीनों इधर देख रही है।

सामने एक स्टेज है जिस पर बहोत सारे आदमी महिलाएं बच्चे दिख रहे हैं और एक पंडित बैठा हुआ है सामने दो लोग बैठकर--

पीले कलर की सफेद कलर की मूर्ती है जिसके पीछे बहोत सारे पेड़ दिख रहे है ऊपर से पे--

सामने एक बड़ा हॉल है जिसमें बहोत सारी बेंच लगी हुई है।